ये स्कूल है यहां पे काफी सारे बच्चे जोकि पढ़ रहे है।

ये प्लेग्राउंड है जो की काफी बड़ी फील्ड है और यहाँ पे बहोत सारे लोग है जो कि खेल रहें हैं और अगल बगल जो है बिल्डिंग है।

ये स्कूल है जो काफ़ी बड़ी है। बाहर एक स्कूल बस है। बहोत बड़ी यहां पे बहोत लोग आते है पढने के लिए। बहोत सारे स्टूडेंट बहोत भीर होती है।